इस चित्र में हमें एक प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहा है।

बहोत से व्यक्ति दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति फोन से फोटो ले रहा है।

इस दुकान में सोनी तथा पैनासोनिक के कैमरे मौजूद है।

इस चित्र में हमें एक गोडाउन नजर आ रहा है।

मंदिर की इमारत का कलर सफेद है।

दीवार में हमें एक मूर्ति नजर आ रही है।

ऑडिटोरियम का स्टेज सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

इस चित्र में हमें हाईवे नजर आ रहा है।

दीवार पर वेलकम लिखा हुआ है एक दीवार पर घोड़ा गाड़ी की तस्वीर बनी हुई है।

इस चित्र में हमें एक स्कूल नजर आ रही हे ।

इस चित्र मे हमे एक स्कूल का नजारा दिख रहा हैं।

इस चित्र में हमें एक बाजार का दृश्य नजर आ रहा है।